पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा है जोकि बादलों से घिरा हुआ है।

दिन की दिखाई दे रही है इन बिल्डिंगों में--

सूर्यो की रोशनी सीधी धरती पर पड़ रही है।

एक बिल्डिंग में एक काले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें स्वीटस --

आप यहां पर दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख सकते हैं।

आप लोग देख सकते हैं यहां पर खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने एक लाल रंग की छत वाली--

यहां पर दो चार बिल्डिंगे सामने दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग में हरे रंग की छत है।

हॉल की फर्श में सफेद रंग किया हुआ है।

आप लोग यहां पर एक बहोत बड़ा हॉल देख सकते हैं हॉल में बहोत--